बिल्डिंग है बिल्डिंग का कलर पिंक है और सुधा जैसे बाउंड्री पे पेंट किया गया है ।

दृष्टि बैंक एस.एस.सी. ऑनलाइन का --

यह एक विश्कर्मा मोटर्स सर्विस रिपेयरिंग सेंटर है।

यह एक कोई मॉल का कैंटीन है इसमें कोका-कोला थमसब इसका स्टॉल लगाया गया है।

और एक काउंटर है एक दवाई खाना की दुकान।

यह एक मस्जिद का फोटो है जिसके मस्जिद के अंदर में एक पेड़ लगा हुआ है।